अलमीरा है उसमें ढेर सारे कुछ- कुछ बनाए हुए रखे हुए हैं और --

और ऊपर में स्लाइडिंग वाला झूला गोल-गोल किया हुआ है।

अलमुनियम का मम दिखने में लग रहा है।

यहाँ पे सामने एक टेबल पे एक स्केलेटन रखा हुआ है।

और घर का कलर जो है ब्लू कलर का एगो कराकाट से घेरा हुआ है।

दो खंभे के बी बीच में दोनों साइड जो है चिकने हैं।

यहाँ पे एक घर है घर के आगे में ब्लू कलर का पोस्टर लगा है |

एक रूम है रूम में एक ऐ.सी. लगा हुआ है |

एक-दो पिलो रखे हुए हैं पीछे में कम्बल भी है |

स्वास्तिक आकार का संघाराम उत्खनन के समय कोल्हुआ।

और वहां पे एक लम्बा-सा लोहे का पोल गड़ा हुआ है।